यह तस्वीर एक सड़क की है जो घर के बाहर से खींची गई है।

यहां पर बीच टेबुल पर एक केक रखा हुआ है।

उ किसी बाइक को ठीक कर रहे हैं साथ में ही एक लड़का खड़ा है।

इस दुकान का नाम है टी_एन यूनिक कलेक्शन ।

यह तस्वीर एक दुकान के बाहर से खिंची गई है।

बाग की है जहां पर बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं और सामने एक टेंट लगाया है।

बहुत सारी मिठाइयां रखी गई है जैसे कि पेड़ा--

हाल की टाइल काले रंग की हैं और दीवारों पर सफेद रंग किया है और छत पर भी सफेद रंग किया है छत पर --